ये बहुत सारे पैरेट्स है।

ये एक रोड है जहाँ पर--

ये एक घूमने की जगह है जहाँ पर काफी झीले बनी हुई हैं और यहाँ थोड़ा-थोड़ा पानी भी है और यहाँ घासे भी है।

यहाँ पर दो बेयर दिख रहे है जो एक बेयर है वो खड़ा हुआ है और यहाँ पर जो दूसरा बेयर है वो कोई चीज़ देख रहा है।

ये एक वॉटर पार्क है जहाँ पर काफी स्लाइड्स और झूले लगे हुए हैं और आगे की तरफ काफी पानी है और यहाँ पर कुछ पॉट्स भी रखे हुए हैं और यहाँ पर काफी ब्लू - ब्लू सा माहौल है।